यहां पर कुछ सोफे दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर कुछ देवी देवता की मूर्तियां बनाई हुई दिख रही हैं।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

एक घास दिखाई दे रहा हैं।

एक बहुत बड़ा पोस्टर दिखाई दे रहा है।

और टेबल पर कुछ टिशू पेपर दिख रहे हैं।

और कुछ गपले दिखाई दे रहे हैं आसमान भी दिखाई --

और कुछ लाइट्स दिखाई दे रही हैं।

जहां पर बहोत से लोग दिखाएं दे रहे हैं।

एक टंकी दिखाईं दे रहीं हैं।

एक सड़क दिखाई दे रही हैं।

और एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं

और कुछ लाइट्स दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।